मकान के पास में बहुत सारे बड़े बड़े हरे पेड़ लगे हुए हैं।

एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे एम_एस_जी_एम_जे_एच स्कूल लिखा हुआ है।

एक नीली जैकेट पहनी हुई आदमी खड़ा हुआ है एक दरवाजा है।

दरवाजा कांच का बना हुआ है बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई है।

एक आदमी के गले में लाल रंग का गमछा पड़ा हुआ है।

बहुत सारे ऑटो हैं ऑटो में आदमी बैठा हुआ है है।

और उसमें खिड़कियां लगी हुई है जो कांच की बनी हुई है।

एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे दशावतार मंदिर प्राचीन बावली लिखा हुआ है।

दुकान के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे मॉडर्न बुक डिपो लगा हुआ है।